जिसमे बहुत सारे लोग है ये और एक जगह बैठे हुए है औ इस मस्जिद मे एक घड़ी भी लगी हुई है जो की टाइम बता रही है उस घड़ी मे दो बज के --

उनके पास उनको का काम करने का हथियार भी है उनके साथ में अगल-बगल बहोत सारे बाँस उसपे रखे गये है धन्यवाद ।

एक घ घंटी भी टंगी गई है।